बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और गंगाजी गंगाजी की एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

तालाब के एक तरफ एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनी हुई है ।

एक हवाई जहाज सफेद पीले और नीले कलर का है एक हवाई जहाज सफेद और लाल कलर का है।

बोहोत बड़ा मैदान है जिसके आधे रास्ते पर मिस मम आधे जगह पर मिट्टी दिख रही आधी जगह पर हरियाली दिखाई दे रही है।

और बस के बाजु में कुछ कार खड़ी है ऑटो खड़ा है माल वाहक खड़ा है आदमी आते-जाते दिख रहे है।

और नीले और पिले और गुलाबी फूल पुरे में लगे हुए हैं हरे कलर की पत्तियां भी लगी हुई हैं ।

राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल का एक बहोत बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है चारो तरफ से टेंट लगा हुआ है।

विनोद ड्रेसेज लिखा हुआ है उसने बहुत सारी दुकाने हैं दुकान के सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

और इसमे सफेद सीमेंट से बने हुए बत्तख दिखाई दे रहे है और बत्तखों के बीच में फुब्बारा बना है।

बोर्ड लगा हुआ है लाल कलर का जिसके ऊपर बाबू कैलाश प्रसाद --

उत्तरा भार्व भाद्रपद का पेड़ नई और रेवती का पेड़ का महुआ ये लिखा है।

अ कंबल रखा हुआ है कमरे में ए.सी. लगा है बैगनी कलर के पर्दे डले हैं दो लाल कलर की कुर्सियाँ रखी हुई हैं और कुछ बैग रखे हैं।